इस चित्र में हमें एक बड़ा खेत दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक बड़ी इमारत दिखाई दे रही है।

जिसके बाहर एक घर बना हुआ है।

कुछ पेड़े लगे हुए हैं।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

जो कि लकड़ी की बनी हुई है।

दो औरतें बैठी हुई हैं।

इस चित्र में हमें एक बड़ा बगीचा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर काफी सारे पेड़ और पौधे लगे हुए हैं।

बड़े पंखे लगे हुए हैं।

कुछ लकड़ियों की कुर्सियां रखी हुई है।

बाहर एक पेड़ा लगा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में मुझे एक मस्जिद दिखाई दे रही है जिसकी जानमाज़ें नीले रंग की हैं।

जो कि सफेद रंग की पुती हुई है।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

जिसमें काफी सारे पौधे लगे हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक सोने की दुकान दिखाई दे रही है।